यहाँ पे फूलों की माला दिखाई दे रही जिसका कलर वाइट पिंक है | यहाँ पे बहुत सारी बोरियाँ भी दिखाई दे रही और ऑरेंज कलर के फूल भी देखाई दे रहे।

यहाँ पे (पर) एक ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है| कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है| यहाँ पे (पर) बहुत सारे लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे है और कुछ चूड़ियाँ भी दिखाई दे रही--

कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं| नीचे जमीन भी दिखाई दे-- यहाँ पे एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है| एक मंदिर टाइप का दिखाई दे रहा है।

एक ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है जिसमें हरी घास लगी हुई कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और फुटबॉल भी दिखाई दे रहे हैं जिसका कलर व्हाइट और --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

यहाँ पे न कुछ पर्दे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉन का गेट भी दिखाई दे रहा। इन --